यहां पर अभी भी धुआँ निकल रहा है।

यह फोटो एक शादी के का दिखाई दे रहा है।

यहां पर दो अंकल दिखाई दे रहे हैं।

किसी ने यहां पर फोटो खींचा है।